और सभी लोग ने व्हाइट कलर की धोती कुर्ता पहनी हुई है।

इस पिक्चर में एक पेट्रोल पंप है जिसमें एक ब्लैक कलर की बस है एक।

और एक व्यक्ति नीचे बैठा हुआ है।

इस पर एक आदमी चलता हुआ दिखाई दे रहा है।